और यहां पे एक पिलर लगे हुए हैं जो कि नीले कलर के हैं।

ये कोई परफॉर्मेंस चल रहा है कुछ बहोत सारे लोग हैं गर्ल्स --

सामने एक दुकान है जिसपे की बोर्ड पे लख लिखा हुआ है कि गाड़ियों की दुकान है व्हीकल्स --

जो की अह वाय_सी ईलेक्ट्रिक वेहीकल करके लिखा हुआ है।

ये इनको और रखा गया है अभी पिंजरे में पिंजरा तो नहीं है ये।

ड्रग्स वगैरा ब्लड्स वगैरा चेक करते हैं माइक्रोस्कोप से--

सामने लिखा हुआ है पोस्टर पे एक्सप्रेस स्टोर्स ।

यह कोई शॉप की दुकान है।

और जहां पर ये खड़े हैं वो खड़े हैं एक क्लीनिक के बाहर।

मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है डॉक्टर प्रियंका डगर भी है।

जिन्होंने एक ही कपड़े पहने हुए हैं एक ने डाली हुई है शर्ट चेक कलर चेक में है चेक शर्ट है नीले कलर की और जींस पहनी हुई है।

ये एक रोड जहां पर कि सामने एक आदमी है जोकि झाड़ू लगा रहा है सड़क पर--